बगीचा में बहुत सारे पेड़ भी है जो हरे भरे खिले हुए हैं।

जिसमें बहुत सी गाड़ियां मोटरसाइकिल नजर आ रही--

था एक सफेद रंग का कार भी नजर आ रहा है।

इसमें दो व्यक्ति और एक नाव चलाने वाला आदमी भी नजर आ रहा है।

यह चित्र एक बड़ा सा मैदान का--

यहां एक ए_टी_एम भी नजर आ रहा है जिसका गेट शीशे का है।